बोर्ड लगा है जिसमें नील सफेद नीले कलर से विदेश भवन --

सामने एक बकरी दिख रही है जो काले कलर की है और दो उसके छोटे बच्चे--

लाल कलर की है और ऊपर उसमें जाला लगा हुआ है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो सफेद शर्ट और काला पेंट पहने है जो एक--

डेम पर खड़ा है नीचे पानी इइ बह रहा है इसमें कंकड़ दिख रहे हैं और साइड के उसके साइड में--

घास लगी हुई है और सामने ऊंचा पहाड़ है जिस पे--

सामने एक बड़ा गेट लगा हुआ है जो लोहे का सफेद और ग्रीन कलर का है और दोनों साइड लकड़ी की--

ऊपर वाली बनी हुई है जो पिंक कलर और ब्लैक एंड वाइट दिख--

और बहुत से पेड़े हैं जो कुछ ग्रीन और कुछ ब्लैक एंड वाइट दिख--

और जिन पर पोस्टर चिपकी हुई है नीचे एक लाल चटाई दिख रही है।

रैक बना है जिसमें बहुत सारा सा सामान दिख रहा है ऊपर गमले रखे हुए हैं और नीचे--

और प्लाजा पहने हुए है और इसमें पीली पट्टी है पीछे पूरा बैकग्राउंड काला दिख रहा है औ--

रखे हुए हैं और एक आदमी कुर्सी पर बैठ के कुछ लिख रहा है और उसके साइड में दो आदमी और बैठे हुए हैं और--

सामने एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी--

बालों पर क्लिप लगा है सामने कांच लगा है जिसमें वो दिख रहे हैं पीछे दो लड़के खड़े हैं एक फोटो --

लाल ट्रक है एक के साइड में नीचे एक छोटी--

काले कलर की और सर्किट लगी हुई है बहुत सारे ऊपर रेक बने हुए हैं।

नीले कलर की एक ही हुई है और कुछ मकड़ी वो--

अ जाले रख अ ब बजरे रखी हुयी है पीछे रैक है जिनमें --

सफेद और काले कलर की पट्टी वाली है जिसमें रस्सी वाले--

बहुत सारे बल्ब लटके हुए हैं सामने दीवार पीली औ--

बीच में कथई कलर की रैक बनी हुई है।

सामने एक खेत दिख रहा है और साइड में एक घर है जो नीले--

कुछ बेला लगी हुई है और एक दीवार दिख रही है जो नीली है जिसके पीछे--

अ लड़कियों की तस्वीर फोटो दिख अ दिख रही है।

त्रिशूल किसी के हाथ में कुछ अ रखा हुआ है सामने वाली--

सामने एक दुकान है जिसमें साइड में एक टेबल बनी है जिसके ऊपर बहुत सारी वाटर --

जूस मेकर और पानी की टंकी रखी हुई है माजा है।

सामने बड़ी दूर एक बड़ी मशीनें दिखाई दी रही हैं जो--

इ इनकी फोटो खींच रहा है इसके साइड में एक और आदमी खड़ा है पीछे और--

चॉकलेटी कलर है और कुछ लिखा हुआ है बहुत से पेड़े हैं।

लगा हुआ है मंदिर पुर पुराना सा सफेद खंड--

सामने एक बड़ी हवाई जहाज दिख रही है जो ऊपर सफेद नीचे नीले कलर की है और जिसमे इंडिगो --

चारों तरफ हरी हरी घास दिख रही है और बहुत सारे आदमी महिलाएं--

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद कलर की है और खम्बे--

और घर बना हुआ है इसके सामने ठिलियां खड़ी है जो अंदर नीली बाहर सफेद और ऊपर पीली पनी बंधी हुई है और--

सामने एक मंदिर दिख रहा है जिसमें ऊपर--

सामने बहुत सारे भगवान जी रखे हुए हैं तीन--

ये मालाए लटकी हुए हैं कुछ झंडे लगे हुए हैं और ऑरेंज कलर क और ग्रीन कलर का--